ये एक पार्क की फोटो हैं जहाँ पे पीछे बहुत सारे फूल दिख रखे है और बहुत सारे आदमी दिख रहे है यहाँ पे एक लड़का है जो येल्लो कलर की शर्ट पहने हुए है रेड कलर का जींस पहनीहुई है वो--

--कोई भी हो सकती है क्लांइट हो सकती है वर्कर हो सकते है यहां पर कुछ फीमेल्स भी बैठी हुई है सॉल ओढ हे ऐसा लगता है सर्दियों का सीजन है यहां पर ऊपर में बैनर भी रखे है।